एक का पूरा फेस छिपा है और एक की आइस दिखाई दे रही है।

पीछे बुद्ध की तस्वीर रखी हुई है पीछे एक फेसवास रखा हुआ है एंड ग्लासेस लगे हुए हैं।

टेबल ब्लैक कलर की है टेबल पर ग्रीन कलर की बॉटल में पानी रखा है।

यहां की दीवारों पर गुब्बारे लगे हैं।

यह अम्बेहता पीर सहारनपुर में स्थित है।

इस फोटो में बहुत सारे पेन पेंसिल रबर कटर आदि दिखाए गए हैं।

तथा कुर्सियों पर रंग बिरंगे कपड़े डाले हुए हैं।

सजावटी कपड़े डाले हैं यहां पर ऊपर की साइड बहुत सारी लाइटे लगी है।

तथा यहां पर एक रेड कलर की बाइक खड़ी है तथा एक टेम्पू भी खड़ा है कि एक्टिवा भी खड़ी है।

होटल के नीचे एक हाय हील्स की दुकान है यहां पर एक विक्टोरि उम्म लिखा हुआ है।

तथा हिंदी में भी प्रशिक्षण केंद्र सहारनपुर लिखा है।

यहां पर एक डोर है। जा यहां पर एक पोस्टर भी लगाया जिस पर लैब का सभी सामान दिखाया गया है। यहां पर तीन विंडो है। बाहर से लाइट आ रही है।

गमलों में लगे हैं फूल एक कार दिखाई दे रही है एक बगीचा दिखाई दे रहा है।

यहां पर दो नंबर लिखे हैं सत्तानवे साठ जीरो दो।

इस फोटो में एक आदमी खड़ा है आदमी कैमरे से कुछ देख रहा है उसके हाथ में एक कागज है।

इस फोटो में एक सड़क दिखाई दे गई है।

यहां पर एक तीन मंजिल बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

यहां पर एक गाड़ी दिखाई दे रही है।

यह फोटो बहुत पुरानी दिखाई दे रही है।

यहां पर बड़े बड़े शब्दों में एक्सरसाइज लिखा है।

दूसरे पोस्ट पर आस्था लिखा है ब्लू कलर में लिख लिखा है।

इस फोटो में अनुपम फर्नीचर इंडस्ट्रीज का पोस्टर लगा है।

यहां पर एक गेट है गेट का कलर रेड है।

यहां पर एक खंभा भी दिखाई दे रहा है।

एक बस भी दिखाई दे रही है यह येलो कलर की बस है।

एंड नीचे की ओर रेड एंड येलो कलर की रास्ता है एंड दीवारें सजी हुई हैं।

यह शाकाहारी होते हैं ये कैक्टस पत्तियां आदि खाते है यह हरे घास पर चल रहा है।